और यहाँ पर बहुत सारे हवन-कुंड बनाए गए हैं बहुत सारे लेडीज और जेंट्स हवन करने के लिए बैठे हुए हैं।

और इस घर के नीचे एक बाइक लगी हुई है और बहुत सारे घास लगे हुए है।

पूजा करने के लिए आए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और एक लड़का खड़े होके --

फोटो खिचवा रहा है इस तालाब के बगल मे और बहुत सारे आस और पेड़ --

यहाँ पे बोहोत सारे मुस्लिम धर्म के लोग आए हुए हैं। यहाँ पे बोहोत भीड़ लगी हुई है।

और बहुत अच्छी भी डांस कर रही है | यहाँ पे बहुत सारे लोग डांस देखने के लिए बैठे हुए हैं ।